ये देखिए ये स्विमिंग पूल है और देखिए यहां पे लाइन बाई लाइन पांच लाइन नीचे ब्लू कलर की दी हुई है और ये --

ये एक दुकान लग रही है जोकि चाय की लग रही है। यहाँ पे देखिये चाय की कप भी है और कॉफ़ी के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं और देखिये --

इसको फूल को दिखा रहा है और यह काफी घना जंगल दिखाई दे रहा है और देखिए दोनों साइड में और हरियाली दिखाई दे रही है और नीचे देखिये --

जोकि देखने में अच्छा लग रहा है और देखिये यह एक वाइट कलर की कार है जोकि देखिये पीछे बहुत बड़ा फील्ड है।

यहाँ पे बहुत सारे बच्चे है जो नीचे फर्श पर बैठे हुए है और इधर भी बचियाँ है जो फ़र्स पे बैठी हुई है और देखिए सबके हाथ मे पेपर है। और ये कुछ --